और यहां पर ब्लैक कलर के हाथ साफ करने के भी रखे हुए है और ग्लास भी रखे हुए है।

यह एक दुकान है दुकान के अंदर बहुत सारा समान रखा हुआ है जोकि लेडीज का है।

और यहाँ पर लाइट भी लगी हुई है उसके उरे ही एक शीशे के कांच का शीशा बना हुआ हे और उस पे व्हाइट और कलर है।

यह एक फैक्ट्री है और यहां पर दो आदमी खड़े हुए हैं जो कि कुछ कार्य कर रहे हैं।

और एक एक बस खड़ी हुई है और गेट है दो पीछे खंभे है और पेड़ खड़े हुए हैं।

और बस का कलर पिंक और रेड है दो आदमी खड़े हैं और एक सीढ़ी लगी है पीछे।

यह एक शॉप है और इसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

बहोत सारी लाइट्स लगी हुई है और नीचे भी बहुत सारा सामान रखा है।

यह एक दुकान है दुकान के अंदर बहुत सारी एल_सी_डी लगी हुई है।

और यहां पर एल_सी_डी के पास में कहीं कहीं बोर्ड लगे हुए है।

जो की रसगुल्ले बर्फी जलेबी मिठाई ऐसी रखी हुई है।